उस सामाने दिख रही हैं सफेदा दिख रहा है।

रोड दिख रहा है रोड पर पानी दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक घर दिख रहा है।

बर्तन दिख रहा है लाइट दिख रहा है बोतल दिख रहा है।

दिख रहा है पेड़ पौधे दिख रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है।

इस तस्वीर में घर दिख रहा है आदमी दिख रहा है।

आसमान दिख रहा है टावर दिख रहा है।

बॉक्स दिख रहा है अगल-बगल पेड़ पौधे दिख रहे हैं कुछ चित्र दिख रहे हैं।

कुर्सी दिख रहा है लड़की बैठी हुई दिख रही है बोतल दिख रहा है।

कुछ नीचे सामान बिछाया हुआ दिख रहा है लाइट दिख रहा है।

एक रोड दिख रहा है अगल-बगल घर दिख रहा है।

दो आदमी हाथ रखा हुआ दिख रहा है एक हरा कलर का समान दिख रहा है।

एक घर दिख रहा है राजधानी होटल दिख रहा है अगल-बगल--

एक घर दिखाई दे रहा है उसमें ढेर सारे सामान दिखाई दे रहा है।

सामने खेत दिखाई दे रहा है अगल-बगल पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है।

ऊपर पहाड़ दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है दो-तीन गाड़ियाँ दिखाई दे रहे है नीचे मट्टी दिखाई दे रहा है अगर बगर पेड़-पौधे दिखाई दे रहा है।

एक झोपड़ी दिखाई दे रहा है कुछ सामान दिखाई दे रहे हैं अगल-बगल पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

घर दिखाई दे रहा है घर में तीन-चार कुर्सियां दिखाई दे रहा है ऊपर लाइट बर रहा है अगल-बगल--

तस्वीर दिखाई दे रहा है संतरा दिखाई दे रहा है अनार दिखाई दे रहा है टेबल दिखाई दे रहा है।

पेड़-पौधा दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

एक बोर्ड दिखाई दे रहा है दो बॉल दिखाई दे रहा है।

पानी में एक आदमी खारा दिखाई दे रहा है हरा भरा घास दिखाई दे रहा है।

एक पुल दिखाई दे रहा है अगल बगल टेंपू दिखाई दे रहा है।

ऊपर कार ट्रक दिखाई दे रहा है।

फील्ड दिखाई दे रहा है दो-तीन झोला दिखाई दे रहा है।

सामने घर दिखाई दे रहा है नीचे जमीन दिखाई दे रहा है।

एक बूढ़ा दिखाई दे रहा है माता सामान दिखाई दे रहा है अगल-बगल घर दिखाई दे रहा--

जिसमें पानी दिखाई दे रहा है।

एक रोड दिखाई दे रहा है बगल में घर दिखाई दे रहा है।

एक घर दिखाई दे रहा है तीन चार गमला दिखाई दे रहा है गमले में फूल दिखाई दे रहा है अगल-बगल घर दिखाई दे रहा है।

दो पोल दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है अगल-बगल घर दिखाई दे रहा है।

अगल-बगल उपस आसमान दिखाई दे रहा है।

गीतार दिखाई दे रहा है ढोलक दिखाई दे रहा है।

पोस्टर दिखाई दे रहा है हरे-भरे घास दिखाई दे रहा है।

अगल-बगल तार के पेड़ दिखाई दे रहा है।

ऊपर जमीन दिखाई दे रहा है।

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है जिसमें तीन-चार औरत दिखाई दे रहे हैं।

तीन चार कुर्सी दिखाई दे रहा है।

कुर्सी पर कुछ आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहा है नीचे जमीन दिखाई दे रहा है ऊपर घर दिखाई दे रहा है।

घर दिखाई दे रहा है दो खिड़की दिखाई दे रहा --

एक दो आदमी दिखाई दे रहा है।

सामने घर दिखाई दे रहा है फूलपत्तियां दिखाई दे रहा है।

नीचे चटाई दिखाई दे रहा है।

नीचे जमीन दिखाई दे रहा --

अगल-बगल बिट दिखाई दे रहा है।

समान सजाया हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने घर दिखाई दे रहा है।

तीन चार गमला दिखाई दे रहा है।

एक छोटा गाड़ी दिखाई दे रहा है।

टेबल तीन चार किताबें दिखाई दे रहे हैं ।

अगल-बगल घर दिखाई दे रहा है।

सामने गेट दिखाई दे रहा है ऊपर छत दिखाई दे रहा है।

आसमान दिखाई दे रहा है अगल-बगल घर दिखाई दे रहा है नीचे जमीन दिखाई दे रहा है।

सामने जमीन दिखाई दे रहा है दो लड़का दिखाई दे रहे है।

ऊपर आकाश दिखाई दे रहा है।

तीन चार पेड़ दिखाई दे रहा है।

छोटे-छोटे पेड़-पौधे दिखाई दे रहा है।

हरे भरे घास दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।